और यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म रखा हैं।

आकर बाहर से सचिव या जिलाधिकारी आकर यहाँ पर मीटिंग जोड़ते हैं और वह गाँव की समाधान की बात करते हैं।

एन.एस.टी. की रिपोर्ट भी मिल --

कई घर पट्टे लगाकर यहां का पिलर भरा हुआ है और यहां पर बालू में से इसको सपोर्ट दी गई है।

है जिसको भी था। उतना ही आदमी को वहाँ पर दौड़ना पड़ता है।

स्टैंड है यहाँ पे बड़े-बड़े अधिकारी --

यह है किसान भाइयों के लिए सबसे --

अन्य तरीके के फूल बनाए जाते हैं।

इनको डिलीवरी भी किया जाता है और यह फूल बाहर से मंगाए जाते हैं।

जिसमें लोग बॉडी सेट करने करते हैं --

जिसको लोग नीचे की तरफ खींचते हैं।

कसरत करती है और हाथों की लंबाई एन लम् हाथों की पावर को बढ़ाती है जिससे --

यह हमारी अधिक से अधिक प्रक्रिया में बढ़ा कर हमें बात कराती है। यह एक --

ये सर्वाधिक ज जल में ही अपना जीवन व्यतीत करता है और यह --

यहाँ पर भी है एक जिम सेंटर है। जिसमे लोग --